बहुत ही सुंन्दर नदी है यहाँ के चारो और--

यहाँ पे आदमी काफी है और गाड़ी भी काफी चल रही है। बगल में दुकानें --

मूर्ति टंगी है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर --